लेकिन ये घर काफी खंडहर बहुत ही पुराना दिखाई दे रहा है।

ये घर तो भाई साहब काफी बड़ा और काफी सुंदर दिखने में --

बहुत सारे है और यहाँ पे पेड़ पता नहीं क्यों काले-काले से दिखाई दे रहे है पर है।

जहाँ बिहार में एक होता है छठ पूजा उसी में ये जो ये जो मुर्तियाँ हैं छठी मइयां की मुर्तियाँ हैं ।